आपलोग भी देख सकते हैं ये हस्बैंड भी चश्मा लगा रखे है इनका और दोनों तो बहुत अच्छा लग रहे है और --

बहुत सारा फूल-उल है सजल बहुत बढ़िया पंडाल लग रखा है।

बहुत बढ़िया लगेगा आम फरेगा तो।